टेबुल पर पढ़ाई कर रहा है बच्चा सब ग्लू रखावा है किताब रखा है टेप रखा है टेबुल हैअच्छा है ग्रील हैअच्छा है।

रूम है बहोत अच्छा है रूम मे बहोत स्टूडेट सब है बहोत अच्छा है।

तीन-चार गो पूल का है मतलब उह वो बिजली का खुट्टा है और बगल में नदी है छोटा-सा पोखर जैसा नदी है| पोखर है नदी नहीं है| और ऊपर से इधर साइड में कांच है पेड़-पौधा है अच्छा लग रहा है देखने में।

तो गाइज ये देखिये मेडिकल शॉप है| यहाँ पे हर कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे निभिया-तभिया उसके बाद है होज-तोज कुञ्चिका है यहाँ पे|

डाल डाक बंगला डालमिया तो यहाँ दुकान है।